inkscape प्रयोग करके design a visiting card पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे :
visiting card के लिए settings
visiting card डिज़ाइन करना
visiting card की विविध प्रतियों को print करने के लिए settings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
अब inkscape खोलते हैं
file पर जाएँ document properties पर click करें
default units को inches करें और default orientation landscape करें
अब visiting card डिज़ाइन करना शुरू करते हैं
अतः rectangle tool प्रयोग करके एक आयत बनाते हैं
selector tool पर click करें
tool controls bar पर width को 35 करें और height को 2 करें
इसे canvas के ऊपरी बाएं कोने पर ले जाएँ
रंग को गहरे हरे से बदलें
अब एक pattern डिज़ाइन करते हैं
bezier tool चुनें और एक wavy line बनाएं
object menu पर जाएँ fill and stroke पर क्लिक करें
stroke का रंग पीला करें
अब wavy line के नीचे एक सीधी line बनाएं
दोनों लाइनें चुनें extensions menu पर जाएँ
generate from path पर और फिर interpolate पर click करें
जाँचें यदि exponent की value 0 है
interpolation steps value को 30 करें
apply button पर और फिर close button पर click करें
ध्यान दें कि interpolation इफ़ेक्ट अब लागू हो गया है
अब हम interpolate डिज़ाइन को कुछ glow इफ़ेक्ट देते हैं डिज़ाइन को चुनें
filters menu पर जाएँ shadows and glows और फिर glow पर click करें
ध्यान दें कि डिज़ाइन पर glow इफ़ेक्ट प्रयोग हुआ है
अब spoken tutorial logo को import करते हैं
मैंने इसे अपने documents folder में सेव किया है
आपको वह logo code files link में दिया गया है
file पर जाएँ और import पर click करें
logo को resize करें और इसे ऊपरी बाएं कोने में रखें
अब libreoffice writer file जो मैंने पहले ही सेव की थी उससे मैं visiting card के विवरण को copy करती हूँ
यह file आपको codes file link में दी गयी है
font size को 12 करें और text के रंग को सफ़ेद करें
spoken tutorial शब्द को चुनें
font के size को 16 करें और इसे bold करें
अब spoken tutorial के लिए हमारा visiting card तैयार है
आगे हम visiting card की विविध प्रतियाँ बनाना सीखेंगे
हम इसे cloning method से कर सकते हैं
ऐसा करने के लिए पहले हमें सारे elements का समूह बनाना चाहिए
सारे elements को चुनने के लिए ctrl + a दबाएं और उनका समूह बनाने के लिए ctrl + g दबाएं
अब edit menu पर जाएँ
clone पर और फिर create tiled clones पर click करें
create tiled clones dialog box खुलता है
symmetry टैब में rows की संख्या को 4 और columns की संख्या को 3 करें
अब create button पर click करें
और फिर dialog box and करें
ध्यान दें कि canvas पर visiting card की विविध प्रतियाँ दिखती हैं
इसी तरह से हम visiting card की विविध प्रतियाँ print कर सकते हैं
ऊपरी बायीं तरफ़ visiting card पर ध्यान दें
इस पर click करें और इसे स्थानांतरित करें
चूँकि यह एक अतिरिक्त प्रति हैं तो इस card को मिटायें
क्या होता है अगर कुछ बदलाव सम्मिलित किये जाने हैं
क्या हमें visiting card की प्रत्येक प्रति बदलनी होगी
बिल्कुल नहीं हमें केवल मौलिक visiting card में संशोधन करना होगा
वही चीज़ प्रतियों में दर्शायी जाएगी
double इसकी कोशिश करते हैं double click करें और मौलिक card पर शब्द spoken tutorial का रंग भूरा करें
ध्यान दें कि visiting card की सारी प्रतियों पर बदलाव हो गए हैं
अब file सेव करते हैं
svg file को svg करने के लिए ctrl + s दबाएं मैं अपनी file को svg करने के लिए location में desktop चुनूँगी
और मैं filename में stvisitingcard type करुँगी और save पर click करुँगी
इसके बाद हम फाइल को pdf format में सेव करेंगे
एक बार फिर file पर जाएँ और save as पर click करें
extension को pdf में बदलें और save पर click करें
resolution को 300 करें और ok पर click करें
अब desktop पर जाते हैं
यहाँ वो file है जो हमने सेव की थी इसे खोलते हैं
यहाँ वो visiting cards हैं जो हमने बनाये
इसे सारांशित करते हैं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
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
निम्न के साथ एक visiting card बनाएं
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
spoken tutorial project भारत सरकार के एम एच आर डी के nmeict के द्वारा समर्थित है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
हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं आई आई we बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद